यह एक श्री राजेश बुक स्टोर भी है जो की--

तैयार की गई है बहोत अच्छे से पीछे फूल लगै हुए हैं और उसके ऊपर--

एक्टिवा और मोटरसाइकिल खड़े हैं और जो एक बैंक के बाहार एक सिक्युरिटी गार्ड है।

यहां कुछ लोग भी खड़े हैं जो कि स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े हैं और कुछ--

हां एक व्यक्ति खड़ा है जोकि अपनी बाइक लेकर--

साथ में ही ताकि और विंडो भी दिख रही है जिसमें से रोशनी अंदर आ रही है।

पीछे बनी हुई हैं जिसमें की लोग खड़े हुए हैं और साथ--

यहां पर एक तस्वीर है जिसमें की झाड़ियां और कुछ--

को बांध रहे हैं और यह गड्ढे में खड़ा कर रहे हैं नीचे--

अह सोलर की जो लाइटें लगी हुई हैं प्लेटें --

यह एक घर के बाहर की तस्वीर जहां पर एक घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है और एक्टिवा खड़ी है।

यहां पर की एक लेडिस एक मच्छी बेच रही है और उसने साथ में ही एक अंडा भी रखा हुआ है और उसी के साथ--

अ इवेंट चल रहा है जिसमें की डॉक्टर --

एक व्यक्ति जो कि बाहर निकल रहा है उसी के साथ एक कमरा बना हुआ है जहां पर एक अह सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उसी के बाहर --

यहां पर एक सामने स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल के बाहर बहोत सारे बच्चे खड़े हैं।